पर अ एक अ दुकान लगी हुई है और एक औरत भी खड़ी हुई है।

यहाँ पर एक अच्छा सा ग्राउंड दिख रहा है जहा पर दो तीन लोग फोटो खिचवा रहे हैं ।

पर पांच-छे बच्चे बैठे हुए है।

पर कुछ बच्चे बैठ के रंगोली बना रहे है लक --

वहाँ पर एक सुंदर एक आदमी ने फोटो खिचवाई है जो की बिलकुल अच्छी फोटो नही है बट --